हम इस चित्र मे देख सकते है नीला आसमान है और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि सफ़ेद और नारंगी रंग मे है और --

हम ये चित्र मे देख सकते है नीला आसमान है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और--